ये कार का अच्छा शोरूम दिखाया गया है इसमें कलरफुल ।

टैटू बनाया जा रहा इसमें उसकी कॉफी है उसने कलर लिया है हाथ में उसके टैटू के निशूल है जिससे वो टैटू निकालने का अब कोई आई--

कोई आय गेस कोई सिलेब्रिटी का है पता नहीं कोई टाइपिंग किया जा रहा हैं टैटू का उसका और उसका घर है टैटू का।

बाहर का व्यू दिखाया गया है अस्पताल का बहुत किल्यर्ली दिखाया गया है व्हाइट और ऊपर ब्लू कलर का बॉडरिंग है ।

और चाय सर्व कर रहा है चाय को कोई अम्म शॉप है उसमे एक लड़का सर्व कर रहा है सब को चाय दिखाया जा रहा है मेकिंग कर रहा है मेेन सर्व कर रहा है ।

काफी अच्छे से जिम का पूरा रिनोवेट किया गया है बहुत हाइ क्वालिटी प्रीमियम जिम लग रहा है देखने में ।

बहुत सारे साइकल्स हैं बाइक्स हैं दिखाई दे रहा है एस_बी_आई का ऊपर बैनर लगा हुआ है अ--

बाहर दिन का व्हिव है बड़ा सा सेंटर में लिखा है रोडवेज दिखाए जा रहे।

कलरफूल कलर्स में बहुत फूल्स हैं बेचने के लिए रखा गया है बच्चा दिखाया गया है बंदा जो ले रखा है।

ये रोडवेज है साइड मे बारीक पट्टी है का टाइम है पहाड दिख रहे काफी अछे अ --

दिख रहा है पे एक बंदा वॉक कर रहा है वो भी दिखाई दे--

यहाँ पे सलून को दिखाया गया है यहाँ पे अ दोतीन चेयर्स हैं एक अ टेबल --

शेम्पू भी है लाइन से ब्लैक कलर के दिख रहा है।

यहा पे जिम दिख रहा हे उपर से टेबल फॅन दिख रहा है जिम के अलग अलग इक्विपमेंट्स दिख रहे है ।

ये दिन का टाइम है रिवर राफ्टिंग कर रहे है इसमे थ्री फोर टू फाइव है एक में सिंगल बंदा बैठा हुआ है रिवर ड्रैफ्टिंग --

बाजू में बहुत सारे पत्थर है एक काफी अ गाँव साइड का एक माहौल दिख रहा है बीच में अ अच्छा सा झाड़ दिख रहा है सन--

इसमें कलरफूल बहोत सारे कलरफूल लाइटिंग्स किए गए है बाजू में दिख रहा है।